यहाँ पर सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है मधुबन रेस्टोरेंट का --

जोकि बाकियों को योगा सीखा रहा है और सामने एक शीशा भी लगा हुआ है।

अंदर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले कलर के कपड़े पहने हैं।

और वह कुछ कागज के पास खड़ा है।